और अंदर की तरफ अलमारी में सीसा लगा हुआ है और उसमे अंदर --

यहां पर तीन लड़कियां खड़ी हुई है बीच में लड़की ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है नीचे की तरफ लेगिंग्स पहनी हुई है।

और ये यहाँ पीछे की तरफ काले लग रंग का पर्दा लगा हुआ है।

पांडव संगीत महल लिखा हुआ है।

बगल में द एक रास्ता है और वहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी है और एक बिल्डिंग है जिनके ऊपर छज्जे बने --